दोनों खड़े होकर व्यक्ति यहां से बात करते नजर आ रहे--

यह तस्वीर एक डांस क्लास की तस्वीर है जैसा कि आप समझ पा ही रहे हैं तस्वीर को देखकर की यह यहां पर रूम के अंदर डांस क्लास --

साथ ही में गुलदस्ता रखा गया है।